ख्याल रखो उसमे झाड़ू लगाए। घास हो रही है घास भी काटो उसकी --

फोटू में मैडम तो कुर्सी पे बैठी हैं लेकिन बच्चे खड़े हैं।